पीछे कुछ सोफे पड़े हुए हैं एक कटोरा रखा हुआ है कुछ ऊपर लाइट जल रही हैं हरे रंग की लाल रंग की।

यहां पर एक बैंकेट हॉल है जिसे सजाया फूलों से सजाया गया है। हरी लाइट जल रही है नीली लाइट जल रही है।

यहां पर एक गाड़ी है आल्टो जो खुली हुई है उसका अंजन चमक रहा है एक मोटसाइंकल खड़ी हुई है।

यहां पर एक मोरनी बैठी हुई है जो डंडों पे बैठी हुई है और चार पांच डंडे खड़े हुए हैं और यहां पर कुछ केले के पेड़ हैं और यहां पर कुछ लंबे-लंबे पत्ते भी हैं।

यहां पे चार पांच पेड़ खड़े है।

यहां पर एक आदमी है और यहां पर पीछे पहाड़ सा है।

और में पत्थर सा है यहां पर और यहां पर पीछे माला सी बनी --

एक सूरज है नीचे जो छुप रहा है।

यहां पर एक मास्टर जी अपने बच्चों को ट्यूशन में पढ़ा रहे है और बच्चे ध्यान से देख रहे हैं और एक लड़की ऊपर ब्लैकबोर्ड पर देख रही है और एक लड़का नीले बनियान में बैठा हुआ है।

यहां पे एक आदमी है।

जिसमें ते पानी आ रहा है।

पानी नीचे को जा रहा--

यहां पे एक बिल्डिंग है।

उस पे नीला रोशनी हो रही है।

उसपे एक नीला बहुत सा है।

और तीन चार बल्ब है सामने पे कुछ गेट लग रहे हैं और यहां पर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं और यहां पर कुछ तस्वीरें भी लगी हुई है।

और इसके बाहर एक आदमी एक लुगाई को बुलेट पर ले जा रहा है।

और ये ये आदमी उल्टा लेटा हुआ है उसके ऊपर एक तौलिया गे गे रक्खा है और उसको ऑपरेशन किया जाएगा।

और यह एक बहोत अच्छा डॉक्टर का अच्छा रूम है और नीचे चप्पल भी निकडी हुई है।

इसमें लोग बाग अपना आंखों का चेकअप करवाने आते हैं।